यहां पे एक साइकल पेड़ के पास और एक कुर्सी और यहां पे कुछ कपड़े टंगे हुए हैं।

एक साइड बहुत सारा पानी भरा है तो दूसरे साइड पानी खाली काम है।

यहां पे पिंक कलर के दो खंबें हैं और पिंक कलर के पर्दे टंगे हुए हैं।

बहुत सारे डिब्बों मोबिल भरा है जोकि बाइक में यूज किया जाता है।